हमे एक कक्ष दिखाई दे रहा है कक्ष की दीवाल नज़र आ रही हैं।

हमें बड़े - बड़े पेड़ नजर आ रहे है इन पेड़ो के तनों पर हमें --

इसने सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने हुए है।

साथ ही व्यक्ति बैठा हुआ हमे दिखाई दे रहा है हमे एक काले रंग की कुर्सी भी नज़र आ रही है हमे--

बना हुआ दिखाई दे रहा है और हमे एक तिरंगा नज़र आ रहा है जो हवा में फहराता हुआ दिखाई दे रहा है।

साथ ही हमें सड़क भी नजर आ रही है हमें एक बैनर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

हमें घने वृक्ष लगे हुए नजर आ रहे है और एक हमें बड़ा काले रंग का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

फोटो टगी हुई नजर आ रही है साथ में कुछ आकृति भी हमे टगी हुई दिखाई दे रही है।

साथ में हमे एक बड़ा झाड़ दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ भी हमे--

साथ में हमे लोहे की रॉड दिखाई दे रही है और दो व्यक्ति काम करते हुए नज़र आ रहे है।

हमे लाइट जलती हुई दिखाई दे रही हैसाथ ही सफ़ेद रंग की दीवाल पर हमे एक हिरण दिखाई दे रहा है।

फूल के पौधे लगे हुए नज़र आ रहै है साथ ही एक हमे बल्ब बाला खम्बा दिखाई दे रहा है और हमे एक भगवान--